घर जो इसके साइड में लाइन लगा के लाल कलर का येलो कलर का।

इनमें अलग अलग कलर का फूल है।

घर के पीछे में पेड़ लगे हैं।

बहुत अच्छा व्यू है बहुत अच्छा मौसम दिखाई दे रहे है।

जंगल है जंगल का बीच में घर है।